और कोई नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर दो टेबल ही है।

यह एक गली है गली के अंदर डीजे रखा गया है डीजे किसी वाहन के ऊपर रखा गया है और डीजे के ऊपर चारो और स्पीकर रखे गए हुआ है।

तो होने वाला हे वो जहाज चालू हे।